यहां पर काफी सारे फ्रेंड्स बैठे हैं यहां पर एक लड़का बैठा है जिसने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहन रखी है ब्लैक कलर की वॉच बांध रखी है।

यहां पर एक सब्जी की दुकान है यहां पर काफी सारी सब्जियां रखी हुई है यहां पर भींडी है शकरकंद है चुकंदर है दोरही है बैंगन हे--

इन्होंने रेड कलर की शर्ट पहन रखी है ऊपर से ब्लैक कलर के हाफ जैकेट पहन रखी है वहां पर एक रेड कलर की कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके नीचे एक शॉप है।

ये रखी हुई है यहाँ पर एक लडका खड़ा है जिसने ओरेंज कलर की--

यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की टी_शर्ट पहेन रखी ब्लैक कलर का बैग टांग रखा है।

पर्पल कलर का टब रखा है यहां पर एक ब्लू कलर का टब रखा है जिसमें सब्जियां हैं।

यहां पर एक केक शॉप है यहां पर काफी सारे केक और पेस्ट्री रखे हुए हैं यहां पर एक लड़का बैठा है जिसने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहन रखी है।

यहां पर कुछ लाइट कलर के येलो फूल रखे हैं कुछ डार्क येलो कलर के फूल रखे हैं यहां पर एक रेड कलर का स्टूल रखा हुआ है।